अंधेरा लग रहा है बहुत ही लाइट के कारण दिन दिखाई दे रहे हैं और--

इसमें कप भी हैं और बिस्किट भी और नीचे डस्टबिन हैं जिसमे चाय पी के आदमी फेक रहे हैं उसके बाद एक छोटा-सा लड़का खड़ा हैं जो की एक दुकान की ओर देख रहा हैं और उसके नीचे एक

एक बहुत ही बड़ा गुफा हैं उसके अंदर एक आदमी जा रहा हैं उसके बाद गुफा-गुफा बहुत ही डेंजर लग रहा हैं गुफा के साइड साइड में गोल्डन कलर के--

बहुत सारे पत्थर के निशान दिखाई दे रहे हैं उसके बाद गुफा लग रहा हैं बहुत ही पुराना गुफा हैं जिसके कारण डरावना दिख --

ये जस्ट बाये साइड में एक टावर दिखाई दे रहा हैं टावर में लग रहा हैं बहुत ही--

साड़ीउड़ी दिखाई दे रहे हैं बगल में एक--उम्म--लेडीज बाहार में खड़ी हुई हैं उसके बाद--

यह एक पेट्रोल पंप लगे हुए हैं जिसमे बहुत सारे गाड़ी आते हैं उसमे तेल भरवा रहे हैं उसके बाद उसमे बहुत सारे--

दो चार बस भी हैं और बहुत सारे पेड़ भी हैं जिसके कारण देखने में पार्क बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं और लग रहा हैं कोई अच्छा ही पार्क होगा देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल --

के ऊपर एक एल-ई-डी टी-वी भी दिखाई दे रहा हैं और एक काटते हुए आदमी--

जो जिसमे उसके खेत के बीचो- बीच दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत ही बड़े- बड़े हैं और

अनाज भी बहुत ही हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।

फोटो के आगे दो बाइक हैं लग रहा हैं आदमी बहुत गुस्सा में हैं इसी कारण डंडे लेकर भाग रहे हैं लग रहा हैं किसी को मारने के लिए जा रहे हैं।

लग रहे हैं डाग हैं उसके ऊपर अगरबत्ती हैं और--

भगवान की मूर्ति हैं उसमे दाये में एक लेडीज दिखाई दे रही हैं जो की पीछे की ओर खड़े हो के--